या बैनर से बनाया गया है।

और जो पत्थर है लग-भग सत्तर अस्सी नब्वे किलो का है।

यहां पर बर्फ जोन है जो यहां पर माउंट --

और यहां पर बोहोत अच्छा दिखाई दे रहे हो तो डस्टबिन दिखाई दे रहे है।

यहां तंदूर चिकन छोले भटूर और वाइट चिल्ली तवा फ्राई --

स्टेज के नीचे हैं व्यक्ति बैठे हुए है और यहां बोहत सारे व्यक्ति नशे में है।

ऐसी नाव केहते है और ऐसी नाव में दो व्यक्ति --